पीछे बहुत सारे कुछ दिख रहे हैं डब्बे पड़े हुए हैं।

दूर एक घर दिखाई दे रहा है पास में पेड़ पौधे दिख रहे हैं घर के ऊपर टंकी है।

ये एक चर्च है उस पर एक आदमी के जैसा दिखाई दे रहा है पीछे बोर्ड लगे हुए हैं रेड कलर के उस पर कुछ नाम लिखे हुए हैं।

ये एक घर है उसके आगे एक खंभे पर चार बल्ब लगे हुए हैं आगे बेल लगी हुई है उस पर कुछ --

टेबल लगी हुई है पास में बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई है एक आदमी है उसे होटल में कुछ काम कर रहा है।

लड़कियां भी पैर झाल के योगा कर रहे हैं।

बहुत सारे पीछे बैलून लगे हुए हैं आगे कांच में फूल ए_सी दिखाई दे रही है पीछे घड़ी दिखाई दे रही है।

सेवा केंद्र पंचायत समिति बीकानेर में है ये और एक औरत खड़ी है रंगीले क्या है?

ये कोई बड़ा मोटा शोरूम है उसके आगे एक छोटी बच्चों की गाड़ी खड़ी हैं सीढ़ियाँ बनाई हुई है उस पर चलते हैं लोग --

ये चाबियों के लॉक बनाए हुए हैं लॉक लगाते है न जो दरवाजों पर वो है।

और पास में लाइटे वगैरा फर्नीचर लगे हुए हैं कुर्सियां पड़ी हैं।

एक ये पंखे जैसा कुछ दिखाई दे रहा है बड़े-बड़े पेड़ हैं इधर जाली करी हुईं हैं नीचे --